मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रही है।

इस नदी के ऊपर दो ब्रिज दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक चिल्ड्रेन पार्क दिखाई दे रही है।

और एक फ्लावर पॉट भी है।

इस तस्वीर में एक मिट्टी और हरा रंग का कुछ घास भी दिखाई दे रही है।

स्विमिंग पूल के सामने एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

एक अच्छी भी दिखाई दे रही है।

इस दुकान के अंदर पंखे भी है।

और तीन आदमी भी दिखाई दे रही है।

दो टेंट का रंग पिंक कलर है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रही है।

और इस कैफ के बाहर एक सी सी टी वी कैमरा भी है।

और इस रेस्टोरेंट के अन के अंद के अंदर डिस्को लाइट भी है।